इसका इंटीरियर येलो और ब्लैक कलर से डिजाइन किया गया है।

यह एक चाय का स्टाल है।

बहुत सारी मोवील बाल्टील पड़े हैं।

यह एक मिठाई की दुकान है।

बाहर बाइक कतार में लगे हैं।

कंस्ट्रक्शन साइड में भी देखा जा सकता है बांस की डंटे लगे हैं।

यह एक टायर्स की दुकान है।

जो कि अभी बनने की कगार पर है।

यह एक मेले का दृश्य लग रहा है।

यहां बहुत सारे लोग बीच मार्केट में खड़े है।

पीछे पीला बस देखा जा सकता है।

हम इसके अंदर एक पंखा भी देख सकते है।

जहां लोग डंबल उठाते हुए देखे जा सकते हैं।

यहां बहुत सारा हैवी वर्कआउट लोग करते हैं।